यह एक है जो पेट्रोल भरवा रही है दो एक वर्कर पेट्रोल भर रहा है एक और बाइक पे खड़ा हुआ है जो पेट्रोल भरवाने के लिए आया है।

यह पिक्चर में गरीब बच्चों को बिस्किट दान किये जा रहे हैं एक पीले शर्ट वाला आदमी जो बच्चों को बिस्किट दान कर रहा है।

घर है पेड़ पौधे लगे हुए हैं नारियल का पेड़ है जो ग्रीन ग्रीन हाउस ग्रीन पत्तों जैसा है।

जिसमें सब इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान मिलते हैं ये है--

यह एक पब्लिक प्लेस है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

घरके पाए खुदे हुए है और यहां पर पाए और घर बना रहा है पीछे एक पेड़ हैं जिसके हरे पोधै हैं।

यह एक ठंडा पेड़ा की दुकान है यहां काफी कोल्ड काफी ये सब मिलता है पीछे मेनू सब लिखा है जिसमें--

तीन बैठने के लिए एक बाकड़ा जैसा है बैठक के लिए पीछे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं।

यह एक साड़ी की शॉप है जिसमें अलग अलग प्रकार की साड़ियां है ड्रेस है।

यह एक बाहर का फोटो है पीछे दो तीन बिल्डिंग है साइड में एक घर है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए--

हैं हरे रंग के पत्ते हैं पेड़ के साइड में खेत हैं खेत में कुछ बोया हुवा नहीं हैं बीच में एक रोड --

यहा मार्केट का वाला दिया गया है बाहर से अच्छा दिखे इसलिए यहा पर रॉकेट लिखा हुआ है।

सर और मैम खड़े हुए टीचर जो बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं।

रखा गए हैं दो दरजी आए हुए हैं पीछे एक कैमरा है।

बंधा हुआ है पीछे पेड़-पौधे हैं।

यह एक हॉस्टेल है हॉस्टेल के बाहर एक पेड़ है नीचे थोड़े बहोत बच्चे बैठे हुए--

इसमें पहतिका का रंग हरा है और घर का रंग सोनेरी जैसा है।

यहां पर सारी पब्लिक खड़ी हुई है धर्म का है यहां पर बहोत सारे लोग खड़े हैं।

यहां पर लोग भी खड़े हैं और लाइटे भी जल रही है मंदिर को डेकोरेट किया गया है।

यहां पर साइकिल पड़ी हुई है साइड में फैन पड़ा हुआ है।

यहां पर और भी चीजें पड़ी हुई है पीछे आकाश है साइड --

जिसका ब्लू कलर किया गया है दो आदमी खड़े हुए हैं।

और यहां पर दो दीवाले बंधी हुई है बहोत ऊपर है ऊपर आकाश है।